माता के हाथ में एक त्रिशूल और एक तलवार रखी नजर आ रही है पीछे की तरफ मुझे एक कांच की बनी हुई खिड़की नजर आ रही है और पीछे उसके कांच की--

एक इलैक्ट्रिक नजर आ रहा है अ साईड की तरफ एक और घर नजर आ रहा है इधर मौसम काफी अच्छा नजर आ रहा है साफ नजर आ रहा है सामने से जो सड़क मुझे काफी खाली नजर आ रही है।

शटर कुछ मुझे बंद नज़र आ रहा है जोकि वाइट कलर का शटर नज़र आ रहा है दो पिलर नज़र आ रही है जोकि वाइट कलर के पिलर नज़र आ रही है नीचे की तरफ टाइल्स मुझे वाइट और ब्राउन कलर की नज़र आ रही है लाइनिंग लाइनिंग में --

के साथ मुझे एक जाली भी नज़र आ रही हैं और एक वाशबेसन नज़र आ रहा हैं वाइट कलर का और ब्लैक कलर की एक नज़र आ रही हैं।

हमें समुन्द्र नजर आ रहा हैं समुन्द्र के साईड कि तरफ़ मुझे एक कुछ छोटे छोटे नजर आ रहे हैं कुछ बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे कुछ मिट्टियाँ भी नजर आ रहा है।

जेकर मुझे इनका दुकान सी नज़र आ रही हैं दुकान के ऊपर की तरफ मुझे ब्लू कलर का बोर्ड लगा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर मुझे इंग्लिश में कुछ लिखा नज़र अ आ रहा है।